इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है नदी के ऊपर पुल बनाया गया है।

जिम करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर की बनियानी और ब्लैक कलर का लोवर पेहन रखा है।